एक जवान लड़का टोपी पहने और चश्मा लगाए किसी पत्थर पे बैठा हुआ है और समुद्र की और देख रहा है। उस --

एक आदमी किराना स्टोर में खड़ा हुआ है उसके पीछे कोका-कोला का रेफ़्रिजरेटर रखा हुआ है।

एक टेंट में लाइट लगी हुई हैं। पीछे बैनर लगा हुआ है और आगे एक आदमी बैठा हुआ है।

एक कमरे में एक आदमी और एक औरत बैठे हुए है आदमी की आँखों की जाँच हो रही है और औरत जाँच कर रही है।

उस कमरे में एक खिड़की भी है जो पूरी खुली हुई है वो दोनों कुर्सी पे बैठे हुए है।

एक इलेक्ट्रीशियन कुछ काम कर रहा है। किसी मशीन से तार के साथ छेड़छाड़ कर रहा है।